और जो वहाॅं पर ऊपर अ इ-पर्यटक नाम का एक बोर्ड भी लिखा हुआ है एक आदमी भी दिखाई दे रहा है और दो व्हाइट कलर के सीट्स है।

एक होटल पैलेस होटल सुधे पैलेस शायद ये होटल भी हो सकता है दो बाइक भी है यहाँ पे खड़ी हुई।

इस फोटो में एक प्लेट है उसके अंदर खाने की चीजे रखी हुई है दिखाई दे रही है प्याज भी दिखाई दे रहा है एक नींबू भी दिखाई दे रहा है दो चम्मच है इसमें एक रेगुलर वाला चम्मच है और फोर्क एक है।

एक छोटा रास्ता भी है और रास्ता डायरेक एक पहाड के उपर जा रहा है उपर एक छो बड़ा वाला पथ्थर भी उस रास्ते पे ब रास्ते के साइड अअ पड़ा हुआ है उसके उपर थोड़े से रेड कलर के दाग भी हैं।

जो भारत पेट्रोलियम का टैंकर है वो ब्लू और व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है जो अ पेट्रोल पम्प पे खड़ा है।